यहाँ पे एक ग्राउंड टाइप का है जो की टेंट लगे हुए हैं।

छोटी-सी छतरी लगी हुई है एक बड़ी छतरी भी लगी हुई है| एक-दो इंसान खड़े हुए देख रहा है टेम्पो जा रहा है उसी रोड से ।